यहां पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर एक इंडियन डेयरी नाम की--

पेठी सब मिलता है इसका कलर बिल्डिंग का क्रीम कलर में है इसको शेप ईंट का तरह दिया गया है और इसका गेट का कलर ब्लैक है।

पेड़ है छोटी छोटी घास है यहां पर बिल्डिंग का कलर ग्रे कलर में है।

आसमान बिल्कुल खुला है धूप का समय है ये दिन का समय है दोपहर का--

यहां पे एक शॉप है उसका नेम है संतोषी द कांसेप्ट शॉप ----

यहां उसका कलर है स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है।

रेड येलो एंड ब्लैक कलर के बहुत से यहां पर डेकोरेशन किया गया है।

पानी है और जो पेड़ है उसकी शैडो पानी में गिर रही है दिन का समय है और यहां पर धूप भी है।

और एक ऊपर शेल्फ है जिसमें मूर्तियां बनाकर रखी हुई है चांदी की----

और उसके ऊपर कुछ चीजें रखी हुई है पानी की बोतल रखी हुई है इसके ऊपर -----

यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं और वो पौधों में बहुत सारे--

ये एक ज्वेलरी शॉप है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरीज रखे हुए हैं बहुत सारे नेकलेसेस हैं यहां पर ----

यहां पर सनसेट टाइप मौसम बना हुआ है और एक पेड़ है जिसकी बहुत अच्छी कटिंग की गई है।

और यहां पर टायर पे वो थोड़ी मट्ठी लगी हुई है और कुछ फर्शे यहां पर कच्चे भी हैं।

और इसके अंदर कुछ एग पफ्स रखे हुए हैं ब्रेड्स रखे हुए हैं फ्रिज है यहां पर----

और बाहर साइड ब्रेड्स रखे हुए हैं स्वीट्स रखे हुए हैं एक टेबल के ऊपर ----